यहाँ पीछे बहुत अच्छी सजावट की गई है फूलों से की गई है यहाँ पे चर्च का सिम्बल बना हुआ है ।

एक आदमी चेयर पर बैठा है जो काले रंग की है आस पास बहुत सी बुक्स हैं यह एक लाइब्रेरी लग रही है यहाँ पे कपबोर्ड लकड़ी का है।

यहाँ पे एक बाल्टी रखी है पास मे एक कटोरा है यहाँ पे एक आदमी है जो पीले रंग की शर्ट पहन कर खड़ा हुआ है।

पीछे नीले रंग की चादर लगी हुई है जो काफी सुंदर है लाल और पीले रंग के फूल लगे हुए है।

यह एक नदी का दृश्य है। यहाँ पे एक लड़का पत्थरो के ऊपर चल रहा है। पत्थर सफेद रंग के हैं और ऊँचे भी हैं। आस-पास बहोत से लोग देख रहे हैं।

यहाँ पे एक शीशा भी है| यहाँ पे दो आदमी खड़े हैं जो मछलियां बेच रहे हैं ।

यह एच_डी_एफ_सी बैंक है । यहां पे चार आदमी खड़े हुए हैं जो बैग टांग कर हैं।

यं एक घर है जो बन रहा है। य काफी बड़ा और लंबा भी है ऊपर दो आदमी डंडे को लिए खड़े हैं नीचे बहुत से डंडे पड़े हुए हैं।

यह एक कॉलेज है। जो काफी बड़ा है और पीले रंग का भी दिख रहा है आस पास घना जंगल है यहां पे मिट्टी की बनी हुई है ।

यह एक स्कूल है जो जिसका गेट ओहें बना हुआ है वह काले रंग का है | यहाँ पे एक बाइक खड़ी हुई है।

यहाँ पे (पर) एक ब्रीज बना हुआ है यहाँ पे (पर) बहुत-से पेड़ भी हैं। यहाँ पे (पर) नाव भी है। यहाँ पे (पर) दो इंसान बैठे हैं ।